यहाँ पे एक पार्क दिखाई दे रहा है जिसमें हरी घास दिखाई दे रही है | सफ़ेद कलर के फूल दिखाई दे रहे हैं |

जिसपे सफ़ेद कलर पोता हुआ दिखाई दे रहा है रास्ता दिखाई दे रहा है।